बाइक है डबल पहाड़ है झील है ।

गाड़ी लगा हुआ है |

बहुत ही अच्छा अच्छा फल फ्लावर है |

काटेदार जल फ्री का पेड़ हैं कठरे में जिसमें काटेदार हैं ।

पौधे का पेड़ है साइड से पत्ते हरे हैं बहुत बड़ी इमारतें हैं लाइटें इसमें लगे हुए हैं ।

दौड़ने वाला चेन स्पॉकेट है।

आगे से सीढ़ियाँ हैं एक --

मीटिंग एटेंड हो रहा है जिसमे आपको मोबाइल टे --

पार्किंग चारों तरफ से ग्रीन पोधे है ।

चारों तरफ से बहुत अच्छी-अच्छी सजावटें लगाए गए हुए हैं ।

स्टूडेंट बच्चियाँ पढ़ रही हैं लाइब्रेरी में ।

बोर्ड सीरिया पब्लिसिटी मिठाइयाँ खरीदे हैं लोगों ने बहुत अच्छे-अच्छे मिठाइयाँ बन रहा है ।

लड़का बच्चा-बच्चियाँ यानी खेल रहा है ।

रेलिंग गाड़ियां चार गाड़ियां लगा हुआ है। जिसमे दो-चार चक्का गाड़ी है। एक मैजिक है। स्कूल मैजिक ।